ये गैरेज है गैरेज में बहुत सारा कार लगा हुआ हैं और चार-पांच मिस्त्री हैं कार को खोल रहे है कस रहे है और उजला कलर का कार है काला कलर का कार है ब्लू कलर का है ।

नाव है पानी है पानी में नाव है और खेत है और बादल-उदल दिख रहा है व्हाइट व्हाइट और द तीन नाव है।

एक हॉल है हॉल में स्टेज बना हुआ है लड़का-लड़की खाड़ी है और लड़का-लड़की के बगल में एक पेड़ है और एक लड़का बाहर खड़ा है लड़का का चश्मा दिख रहा है और हॉल में बहुत सारा पोस्टर है।

ये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में घड़ी है बिल्डिंग के बाहर ये इ रिक्शा लगा हुआ है और बिल्डिंग के बाहर बहुत सारा तार है और बिल्डिंग में त्रिशूल भी बना हुआ है बिल्डिंग के बगल में एक टॉवर है और बिल्डिंग के बाहर सब परसादी बेच रे देखने यह मंदिर टाइप का लग रहा है।